ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी है। एक बिल्डिंग का कलर नारंगी है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है बिल्डिंग के ऊपर नीला बोर्ड लगा है।

सामने एक घर बना है घर में ऊपर बोर्ड लगा है। बोर्ड में नीला कलर पुता है।